यह एक पेट्रोल पैप का चित्र है और यहां पर पेट्रोल पैप का रंग है सफेद।

यह गेट का चित्र है गेट का रंग है काला।

और यहां पर खंभे भी है खंभे का रंग है सफेद और लाल और यहां पर बहुत सारे लोग भी है।

यहां पर एक बाहर मे बड़ा सा बोर्ड लगाया गया है बोर्ड में लिखा गया है महावीर इ इ किराना।

यह एक स्कूल का चित्र है और यहां पर एक मास्टर भी पढ़ा रहा है।

लाल रंग का एक साइकल भी लगाया गया है।

और आसमान का चित्र दिखाई दे रहा है।

और यहां पर एक कपड़ा भी रखा गया है।

और ऊपर में आसमान भी दिख रहा है।